यहां पर एक नीचे नदी भी बह रही है जिसके ऊपर एक बांध बनाकर पुल भी बनाया गया है।

या तो यहां पर भागवत कथा होने वाली है या फिर कोई राम कथा वगैरह का आयोजन किया गया है।